टीचर है या वह पेरेंट्स हो सकती है। वह भी बैठी है। उन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी है।

ये पूरा स्नो से भरा हुआ छेत्र दिख रहा है।

ये फोटो हरियाली भरे एक शांत वातावरण का दिखाई दे रहा है।

ये फोटो किसी कपड़े के शोरूम का दिख रहा है यहां पे बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

और फिर एक दो बहोत बड़े बड़े ऐसे शीशे के खिड़कियां दिख रही है।

पूरा गोल्डन कलर का इसका वर्क हुआ है और रेड कलर की उसकी दीवाले है।

और आस पास कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और जिसकी बाउंड्री वो रेड कलर की है और--

और फिर आसपास हरा हरा हरा लेफ्ट साइड में पहाड़ दिख रहा है।

और यहां पे बहुत सारे आस आगे पेड़ पौधे भी दिख--

भीड़ भी दिख रहे हैं और यहां पे एक फुटपाथ भी बना है लोगों के जाने के लिए।

ये फोटो में कुछ अ स्टोर हाउस वेयर हाउस जैसा दिख रहा है।

पीछे एक पहाड़ दिख रहा है आसमान दिख रहा है औ--

इस फोटो में एक होटल रूम दिखया गया है।

अगरबत्ती रखा हुआ है और कुछ मैगी के पैकेटस रखे हुए हैं कुछ सेरेलक वगैरा रखा हुआ है नीचे कुछ नमकीन बिस्किट वगैरा भी रखे हुए हैं यह अलग अलग काउंटर्स में ऐसे बने हुए हैं।

और इधर से कुछ एंट्रेंस या एक्जिट गेट जैसा है जिसमे की ग्लास के ऐसे वो ऊपर का वर्क ग्लास का हुआ है।

आगे में कुछ पेंस टंगी हुई है राइट साइड में बहुत सारी कॉपीज और पेन जो कि रैक में करके--

ये पूरा ऐसे प्लेन है कुछ टेंट उधर लगा हुआ ऐसा लग रहा है यहां पे कुछ फंक्शन हुआ है या होने वाला है।

और एक कोल्ड ड्रिंकस का रेफ्रिजरेटर और दूध का रेफ्रिजरेटर भी दिख रहा है।

और बगल में कुछ ऐसे डेकोरेटिव पीसेज रखे हुए हैं।

और आस पास सेंटर टेबल और उसके आस पास चेयर्स लगे हुए हैं।